रंग-बिरंगी लाइट्स दिख रही है.

दे रहा है एक आदमी के हाथ में चोट दिखाई दे रही है.

दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई--

दे रहे हैं। ग्राउंड में घास उगी हुई दिखाई दे रही है।

दे रहा है और एक बेंच दिखाई--

है जहां पर गाड़ियां चलती हुई--

यह एक रेस्टोरेंट दिखाई--

दे रही है कुछ लाइट्स --

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं.

नजर आ रहे है और एक पानी--

एक बाइक को ढका हुआ दिखाई--

यहां कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे--

दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई--

यहां एक बाइक दिखाई--

कुछ पेड़ दिखाई दे रहेव् --

दे रहा है जहां पर बहुत सा--

टाइल से बना हुआ दिखाई दे रहा--

हैं एक अलमीरा दिखाई दे रही हैं।

एक मैट दिख रहा है.